इसमें हमें दो डॉक्टर एक पशु ईलाज करते हुए नजर आ रहे हैं।

सिंग जी है यह फाजिल्का में स्थित है।

इसमें हमे कुछ बच्चे और एक औरत भी नज़र आ रही है।

इसमें बहोत बुक्स पड़ी हुई है।

उसके ऊपर टाटा मोटर्स सर्विस लिखा है।

देखनें से यह हमें किसी--

चर्च का दृश्य दिखाया जा रहा है।

यह हमें किसी मेले का दृश्य दिखाया जा रहा है।

हमें ऊपर एक एरोप्लेन भी दिखाई दे रहा है।

हमें पेड़ पौधे भी दिखाई जा रही है।

कि छोटी मशीनस बनी दिख रही हैं।

इसमें हमें वारूप पेंटिंग्स भी बनी हुई नजर आ रही है।

हमें इसमें में वृक्ष भी दिख रही है।